कुछ लोग खड़े है बैठे हैं झंडा लहरा रहा है दूर झूला दिखा है और लाइट लगी है।

इस फोटो में एक मंच पर महिला नृत्य कर रही है जिसने हरे रंग की साड़ी पहन रखी है लाल रंग का आलता लगा हुआ है मंच को गुब्बारों से सजाया गया है।

यह नाई की एक दुकान है जहाँ बच्चे के बालों मे विचित्र प्रकार के चिमटे लगाए गए है।

कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे है। एक टेम्पो कुछ गड़ियाँ और साइकिल चल रही है।